पैर उठा के बैठ खड़ी हुई है एक साइकिल खड़ी है एक गांव है सामने मंदिर हैं।

सोफा ब्लैक कलर का है पेंट व्हाइट कलर की हो रखी है ए_सी लगा हुआ है।

अ तीन कुत्ते बैठे हैं एक काला कुत्ता है और एक काला सफेद है एक ब्राउन सफेद है।

ये पता नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हैं वाली--

स्टेफ़नी के टायर छुड़ाय जाते है मशीन रखी हुई है काफी सारी जेटपेट का टायर है रेड फ़र्श है रेड मशीन है यल्लो मशीन है।

दोनों तरफ खिड़की और पर्दा लगा हुआ है ऊपर एल_ई_डी लगी हुई है यहां पे कुछ सामान रखा हुआ है दवाइयां हैं टेबल है।